पीछे की तरफ भी पेड़ है ऊपर से तार नजर आते है एक खम्भा भी है एक आदमी भी है।

मुझे बहुत सारी हरियाली दिखाई दे रही है पेड़ पौधे पत्तिया गुलाबी रंग के फूल नजर आ रहे हैं। मुझे--

पिले अरैन्ज लाल गुलाबी एवं और भी कलर के फूल से उनकी सजावट की गई हैं मुझे आसमान नजर आ रहा हैं ।

कुछ लोग रंगोली बनाये हुए दिखाई दे रहें है।